फ्लावर लगे हुए हैं एक जे_सी_बी --

सफेद लाइट जस रही है चारों तरफ वाइ--

और इसमें पांच पंखे हैं।